जिसमें से एक सीट पर बैठा हुआ है। सामने एक ट्रे भी दिखाई दे रही है।

सिर में एक ऊपर टॉवल सा लपेट रखा है।

ब्लू और व्हाइट कलर के बैलून्स से उसकी एक गेट बना हुआ है जिसके बाहर अ-अ-अ छे (छह) लोग खड़े हुए है एक मोटरसाइकिल भी खडी है और।

हरी टी-शर्ट पहने हुए खड़ा है और माँ के पैरों पर प्रणाम कर रहा है।